हैलो लाइट लागल वा पत्थर वा गुफा वा फोटो खींचा वा घूमता |

योगा कर्तन सन डांस कर्तन सन धुआं उडता। बी.एन.डब्लू स्कूल बा झंडा बा लाइका बानसन। प्रोग्राम करतन सन मेज बिछल बा कुर्सी बा फूल बा।

पेड़ बा प प प् त यार बा आदमी बा लइका बाड़न स घूमे जा ताड़न सन।

तकिया देइल बा ऊ ए जा नमाज पढ़तारन सं वो वियाह होके जाता अ --

लाइट लागल बा झालर बा रात बा दिन बा उजियार बा वल्लो बा तार बा माल बा अ एक आदमी घुमता स्कूटी खड़ा बा टोपी पहिनले बा जूता पहिनले बा।

खड़ा होके फोटवाली करतसं लड़की बाड़ीसन साड़ी पहने वाली सन स्वेटर पहने वाली --